इस चित्र में बच्चे खेल रहे है ग्राउंड है घास है।

और बच्चे कुद रहे है।

इ रिक्शा है सड़क है ईटा है।

स्वरल लाइट है।

पक्षी उड़ रहा है।